सामने ज़मीन पर हरे कलर की दरी बिछी हुई है दरी पर काफी सारी औरते बैठी हुई है सभी औरतों ने सर पे दुपट्टा लिया हुआ हैं।

सामने एक बड़ा सा हॉल नज़र आ रहा हैं किनारे पर काफी सारे टेबल ओर चेयर लगे हुए हैं दीवार पर गोल मिरर लगे हुए है।

सामने एक रस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है नीचे दो गमले है गमलों के अंदर दो पोधे लगे हुए है।

और चॉकोर सा मैदान बना हुआ हैं सामने दूर पर एक बड़ा-सा एयरोप्लेन लैंड हुआ हैं सामने एक बड़े से पेड़ की जड़ नज़र आ रही हैं।

यह स्कूल की काफी सारी खिड़किया नज़र आ रही है निचे जमीन है जिसमे काफी सारे मिट्टिया है यहाँ सामने एक आदमी मोबाइल ले कर खड़ा है।

सामने एक बड़ा सा मेनू कार्ड लटका हुआ है जिसमे काफी सारे डिसेस के नाम लिखे हुए है किनारे पर कुछ कढ़ाहिया जैसा बना हुआ है ।

सामने काफी सारे बलूनस लगे हुए है बलूनस रेड और वाइट कलर के है निचे एक बॉटलस रखा हुआ है।

ऊँची-ऊँची चट्टाने है इसमें छोटे-छोटे घास उग गए है यह सामने एक आदमी का हाथ नज़र आ रहा है।

जमीन पर लाल -लाल कुछ पड़ा हुआ है यह दूर पर काफी बड़े - बड़े पेड़ नज़र आ रहे है और छोटे - छोटे से मकान नज़र आ रहे है आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है।

यहाँ सामने दो लोग खड़े हुए है दोनों एक ने टी शर्ट और लोअर पहना है और एक ने शर्ट लोअर पहना हुआ है सामने दो-दो सीढिया नज़र आ रही है।

पीछे काफी सारे दरवाजे नज़र आ रहे है जमीन पर छोटे - छोटे घास और मिट्टियाँ उग आयी है पीछे एक छोटी सी लाइट लगी हुई है।

ऊपर खिड़किया बनी हुई है और उसके ऊपर बाजा है सामने छोटी-सी सीढ़िया स्लाइडिंग जैसी बनी है और फिर सड़क नज़र आ रही है बगल में भी कुछ मकान नज़र आ रहे है।

बीच में काफी सारे डिज़ाइन के पौधे कटाए गए है सामने रेलिंग नज़र आ रही है यहाँ पीछे बड़े- बड़े माकन है चारों तरफ बड़े- बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा मैदान है किनारे पर टिन की छते बनी है।

किनारे-किनारे काफी सारे पौधे लगे है।